शॉप है ये मतलब एक बड़ा सा जो उसको बोलते हैं कपड़ों का शोरूम है यहां पर कपड़े हैं जैकेट चर्सी जो भी आप लेना चाहें वो यहाँ पर मिल सकता है ले इसके --

रूम है जो कि बोहोत बढ़िया उम्म उम्म बोहोत ही अच्छा रूम है जिसमें कि एक बड़ी एल_सी_डी लगी है और यहां पर चाय बनाने का एक ट्रे है जिसमें कि पूरी कंप्लीट चाय बन सकती है कॉफी या चाय।

देख रहे है। इस तस्वीर में हम देख रहे है कि जिसमें एक तालाब है। एक छोटा सा ही तालाब है जिसको के यहाँ पर देख रहे है काफी सफा है। तालाब गंदा नही है।

बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक वो है जिसमें के यहाँ पर पेड़ खेड़ कर ले जा रहे है।